और एक मैन गेट लगा हुआ है अभी घर की छवाई नही हुई है।

पर बहोत सारी मछ्ली रखी हुई हैं।

कुछ लोग पैदल जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं और पेड़ भी दिखाई --

दुल्हन पल्लू कर रही है दूल्हा उधर देख रहा है दुल्हन भी बहुत सुंदर लग रही है। दूल्हा भी--